सामने एक बेंक दिख रहा है जिसके बहार कुछ पौधे गमले में लगे है उसके सामने उसके साईड में कुछ कोलेज का बोर्ड लगा हुआ है।

दीवाल पे घड़ी लगी है दीवाल पे एक वॉल पेंट लगा है और खुछ कर्टेन्स भी दिख रहे है खिड़की भी दिख रही है।

बहुत सारी दवाएं रखी हुई है बहार जो आदमी खड़ा है उसके हाथ में प्लास्टर बंधा है वाईट कलर का--

पीछे लाल कलर से लाल कलर की मशीन रखी है कुछ दो बाइक दिख रहे है और पीछे बोरियों में कुछ रखा हुआ है और पीछे दुकान भी दिख रहे है।

सामने पानी दिख रहा है जो डेम मे से आ रहा है डेम के गेट खुल गये है तो पानी आ रहा है सामने हरे कलर का पेड़ दिख रहा है डेम के लिए जीने दिए गये है रैली भी लगी गई हैं।

इत है दीवाल दिखक् रही है सामने हरे- हरे पहाड़ दिख रहे है।

और एक गाड़ी भि दिख रही है जो सामने खड़ी है।